यह दूर गाँव से एक प पुराना पहाड़ सा दिखाई दे रहा है और यहाँ पर गड्ढों में पानी भरा हुआ है।